यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं जो अलग अलग तरह के कपडे पहनकर खड़े हुए हैं और सामने दूर तक बहुत ही अच्छी मार्र्केट है ये और इस मार्किट में बड़े बड़े होल्डिंग भी लगे हुए है और उसमे दुकान के नाम--

यहाँ पर खुला एरिया हैं जो की बहुत ही खुबसूरत लग रहा है। यह बहुत ही खुबसूरत नेचरल भरा हुआ है एरिया है।

निचे के कारपेट जो ग्रीन कलर का है और ये स्टेज काफी खुबसूरत लग रहा है वो दोनों एक सोफे से बेठे है जो बहुत ही प्यारा सोफा है वो रेड और वाईट--

यहाँ पे बहुत सारे बच्चे है जो खुले मैदान ग्राउंड में कुछ डिजायन बना हुवा और वो उस गेम को खेल रहे है हर बच्चे एक बच्चे के पीछे खड़ा है और वह गोल से रिंग में अंदर आते और बहार जाते हैं।

यहाँ पर एक दुकान है जो केफे जैसा लग रहा हैं और यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने की चीजे हैं और ये दुकान बहुत ही कलर फुल लग रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं।

यहाँ पर एक झोपडी टाई से खुच बना हैं जो लोहे के खभे पर सुपोरट किये खड़ा हैं ओर यहाँ पानी हैं बगल में जो बहुत ही खुबसूरत लग रहा हैं ये ग्रीन कलर का पानी हैं।

और यहाँ पर लाईट लग भी लगी हुयी है जिसमे छोटे-छोटे डेकोरेशन वाले लाईट कह सकते है यहाँ पर एक दीवाल पर बैलून लगी हुयी है जिसका रंग नीला है और यहां पर काउंटर पर भी एक--